अच्छा काम करेगा तो पूरस अअअ इनाम मिलेगा आप भी आ सकते है यहाँ पर अपना नाम कमाईऐ आगे बढ़िए बहुत ही अच्छा देख रहे है यहाँ पर आ बहुत ही लड़की नाम कमाई है।

और ये गाड़ी गैरेज ये मिस्री बना रहा हैं गाड़ी को यहाँ पे हर चीज सामान हैं गाडी का बनने के लिए हर चीज यहाँ पे बनता हैं कोइ सा गाडी बन सकता हैं।

--बहुत ही अच्छा हर सुबहे सुबहे यहाँ पे डा-उ-कसरत करने के लिए आते है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लाइट लगे हुए है बहुत ही सुन्दर यहाँ पे दिख रहा है और बच्चे लोग भी बहुत ही सुन्दर सुन्दर--

हेलो गाइस यहाँ पे देख सकते है काली माई की यहाँ पे मंदिर है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे पूजा- वूजा हो रहा है और बहुत ही अच्छे यहाँ पे मंदिर को सजाया गया है और पूरा फूल ते ढक दिए है बहुत ही सुन्दर यहाँ पे दिख रहा है और हॉल -मन--

--और बहुत ही सुन्दर यहाँ पे मछली है अभी आप भी आये यहाँ पे मछली लेने के लिए। बहुत ही ----

हेलो गाइस यहाँ पे देख सकते है बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे फूल बेचा आ रहा है और नीम का पत्ता भी बेचा आ रहा है बहुत अच्छा अच्छा सामान है।

हेलो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कैसे यहा पर बाल बना रहे हैं हेयरस्टाइल यहाँ पे बाल काट रहा है और बहुत अच्छे से यहाँ पे नीला चद्दर ओढ़ाया गया है ताकि बाल न जाय इसलिए डब्बा है बहुत ही सारा सामान है यहाँ पे बाल--

हेलो गाइस यहाँ पे देख सकते है बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है पार्टी हो रहा है बहुत सारे यहाँ पे आदमी बैठे हुए है बहुत ही सुन्दर यहाँ पे दिख रहा है फुग्गा-उगा पूरा लगा हुआ है।

--आप आईये घूमिये टहलिए बहुत ही सुन्दर है आप आ सकते है यहाँ पर--

--आप देख सकते है यहाँ पर कुछ पूजा वुजा हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे बेल धरे हुए है।

यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे एक बगल बगल में जंगल है यहाँ पे बीच मे समुन्द्र है बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है मममम और समुंदर और यहाँ पे मछली वछली सब रहते है।

और लाल लाल द्रे-आई मीन लाल लेंघा पहने है औरररररर ऊपर कूऊओ टीशर्ट है बहुत ही अच्छा ]